ये कोई जैसे पुराना हिस्टोरिकल इवेंट जैसा है अं जोकि कंस्ट्रक्टेड नहीं लग रहा है मेंटेनेंस --

ये एक डियर की फोटो लग रही है अह कहीं खेत वगैरह में वो खड़ा है।

यहां पे बहुत सारी मट्टी है आसपास ग्रीनरी भी है यहां पर।

यह एक ठों मुझे होटल दिख रही है होटल शिवाय अं जहां पर अ आस पास ग्रीनरी है और मौसम भी काफी अच्छा लग रहा है।

जहां पर डेली की चीज जैसे--

ये मुझे अ सर्कुलर शेप में लग रहे हैं इसके कुछ विंगस हैं अ सिक्स विंगस हैं और बहोत सारे ऐसे --

ये मुझे कुछ अ चेयर लग रही है कुछ बॉडी चैकअप के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं।

सामने भी सर्विसिंग वगैरह की गई है। एंड एक डब्बा भी पड़ा हुआ है।

पिकनिक स्पॉट ओर नियर बाई हॉर्स विजिटिंग के लिए--

आये हैं ब्लू यूनिफॉर्म पहनी हुई हैं।

यहां काफी अ अंधेरा हैं और रेड लाइट जली हुईं हैं।

ये एक खुला पार्क जैसा है जहां पर--

यह मुझे काफी ओपन एरिया काफी दूर से फोटो खींचा गया है बहुत लोगों की भीड़ नजर आ रही है ऊपर से--

और कैलेंडर वगैरह भी लग रखा हुआ है।

यहां पर ऐसे पॉलिथीन में पैक किया हुआ है चारजर वगैरह इमेज भी--

ये एक पार्क है जहां पर लेडिस जो है--

ई मुझे लॉर्ड बुद्धा की अ आइडल तस्वीर है बड़ी सी अ मंदिर जैसे है।

और एक पर्शन भी खड़ा है सेल्फी ले रहा है।

अंधेरा सा है थोड़ा सा हल्की सी ना के बराबर रोशनी है।

अलग एंड नीचे से बैंड जैसा अलग कलर अच्छे से है।

और जहां पे इनका जैसे मिल्क वगैरा का जो प्रोडक्शन रहता है।

और काफी लाइटिंग अच्छे से की हुई है।

ये मुझे एक प्रॉपर मैकेनिक मशीन लग रही है।

एंड एक बोर्ड भी लगा हुआ है अ थोड़ा क्रिएटिव है जैसे बच्चों को कुछ सीखने वगैरह के लिए जैसे लगाया जाता है किड्स प्ले स्कूल में।

विजिटिंग स्पेस है जहां माउंटेन की है।

एंड अच्छा क्लाइमेट है यहां पे--

आया फिर सलून सलून जैसा कुछ--

अ भगवान की मूर्ति है जहां पे कुछ सामग्री--

एंड स्लाइडिंगस वगैरह है यहां पर।